और एक ओवर ब्रिज भी छोटा सा दिख रहा है।

उसके पीछे बहुत से पेड़ लगे हुए हैं।

अ इस मेट्रो स्टेशन के बाहर सारे गमले रखे हुए --

जोकि एक फंक्शन की है।

यह पिक्चर एक श्री श्याम जी के मंदिर का है।

इस कैफे में बहुत सारी कुर्सिया और रखी हुई है।

रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं।

उसके बाहर बहोत सारी बाइक्स खड़ी दिख रहीं--

इस पिक्चर में एक एस_बी_आई सेंटर का हेड क्वार्टर --

इसमें एक कुर्सी रखी हुई--

इसमें बहोत सारे लोग खाना खा रहे हैं।